यह भी एक बेंक का पिक है। यह बैंक बिल्डिंग के सेकेण्ड फ्लोर पर है ये देखिये बेंक में छत पर से गार्ड साहब दिख रहे हैं।

मंदिर मे चार चाँद लगा दिय गए हैं| माल मंदिर फुली टाइट है | यहाँ पे सीढ़ी भी लगा हुआ है जिससे लोग ऊपर तक जा सकते है।

यह एक रेस्टोरेंट का पीक है यहाँ पे |

और रोड के किनारे है। अन्दर बहोत दूर बहोत लम्बा फैला हुआ अस्कूल है।

तंबू टेंट हाउस यहाँ पे रहने के लिए चार्ज किया जाता है।

यह रोड के किनारे अस्थित है। यहाॅं पे अच्छा मार्किट है बगल में होस्टल वगेरा भी है।